और यहाँ पे बहुत सारे जिम के इक्विपमेंट रखे हुऐ है इसका जो फर्श है वो काले रंग का है यहाँ पे लाल रंग की--

तो ये यहाँ पे लोग जिम करते है।

यह कोई रास्ता की फोटो है जिसमे दो भरी-भरी गेट है बीच में एक बैठने की जगह है जहाँ पे कांच लगी हुई है।